और एक सड़क दिख री है जिसपे एक ऑटो चल रहा है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमे छोटे-छोटे हरे घास दिख रहे हैं।

सामने एक वॉल पे भीम रॉव आंबेडकर का बैनर लगा --

एक बैनर है जिसपे बेसिक अकेडेमी लिखा हुआ हैं।

सेल्स में रखे हुए है जो प्लास्टिक से पैक्ड है ।

और फर्श पे टाइल्स लगी हुईं हैं और यहाँ बीच में एक राउंड टेबल है।

और नीचे फ्लौर पे ग्रीन कारपेट है और कुछ ब्लैक मेट बिछे हुए है।